जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह एक आधार सेवा केंद्र हैं। यहां पे आधार कार्ड बनवाए और सुधरवाए जाते हैं।

नदी के बीच में कुछ छोटे छोटे पठार और --

यहां एक सामने शीशा लगा हुआ है।

तथा सभी चटाई पर बैठे हुए हैं।

तथा मंदिर बना के चार दीवारों से इसे घेर रखा है।

यहां पर कुछ पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं तथा यहां पर एक कचरा पेटी रखी हुई है।

यहाँ पर सरिया और लोहे के स्तंभों से --

इनमे सभी में पन्नियाँ लगी हुई हैं।

यहाँ लाल गुलाब के फूल की लड़ी गुलाबी गुलाब के फूल की लड़ी --

कमरे के ऊपर कुछ खिड़कियां है तथा रास का --

यहां पे कुछ व्यक्ति भी मौजूद हैं।

यहाँ पे बहुत ही भीड़-भार है।

तथा यहां एक झूमर लगा हुआ है।

यहां पर बहुत सारे सोफ़े लगे हुए हैं तथा यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है।

समुंदर के ऊपर एक पुल बना हुआ है।

तथा विटामिन की दवाइयाँ तथा प्रोटीन की दवाइयाँ --

यह बड़ी-बड़ी चट्टानों से बना से बना हुआ है।

यहाँ एक बड़ी मोश मेज पे एक व्यक्ति बैठा है।